मुझे इस तस्वीर में एक बहोत चौड़ी सड़क दिख रही है।

यहां पर हरे रंग का मैट बिछाया गया--

बहुत सारी हरी घास दिखाई दे रही है।

कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रखी हुई हैं।